कुर्सियां भी पड़ी हुई हैं। कुछ सादा कुर्सियां हैं और कुछ बड़ी कुर्सी --

वैसे और ये जोकि यहाँ गाड़ी निकलती है ओवर ओवर ओवरलोड गाड़ी निकलने से --

जैसा की हम देख रहे हैं ये दुकान दिखाई दे रही है जामेट्री बॉक्स यानी पेन पेंसिल रबर कटर की --

चूकि बच्चों के काम में आते हैं। छोटे छोटे बच्चे जो एक से तीन तक पढ़ते हैं। वो पेंसिल से लिखवाया जाता है। ताकी उनके --

ए जोकि अच्छी दिए गये हैं। उसके पास पौधे लगे हुए हैं। काफ़ी इस अच्छे पौधे लगे हैं।

जैसा कि हम देख रहे हैं ये कोठी हमें दिखाई गयी है। काफी --

जैसा कि हम देख रहे है की ये भैया लोग तालाब से काफी मछलियाँ मारी हुई है।

और जो कि इसमे एसी भी लगी हुई है जो कि बाहर लगा रखा है और जाली भी लगा रखी है ताकि कोई एसी खुल ना ले और ये बैंक भी अच्छी है जो कि न्यू है खुली मतलब --

जैसा कि हम देख रहें हैं एक ई रिस्क है जो कि काफी बड़ा किसी ने अपना घर बना रखा है और --

काफ़ी अच्छी है। खूब के साथ दिखाई दे रहा है जो जाती है। बोहत भीड़ लगी --

जैसा कि हम देख रहे है हमारे सामने काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि मतलब हमारे ऐरीया में काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि --